और फ्लावर पॉट्स जिसमें सुंदर सुंदर पत्ते दिखाई दे रहे हैं उसके सामने--

प्लास्टिक में पानी भरकर लटकाए हुए भी दिखाई दे रहे और सामने काफी सारे लाइट बल्बस --

एक बोट है जिसमें हेयर एक्सपर्ट लॉरिअल प्रोफेशनल के नाम से लिखा गया है।

सबसे पहले मुझे इस तस्वीर में छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है।

इसमें छह वोट हैंऔर जिसके ऊपर काफी सारे इंसान--

लेफ्ट में भी काफी सारे कपड़े साथ में रखें गए हैं पैकिंग के साथ।

और साइड में एक सीढ़ी भी रखा हुआ है और दुकान के ठीक ऊपर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है।

दिख रहा है जिसमें काफी ज्यादे डेली यूज के सामान रखे गए हैं जैसे शैंपू ।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

और अंदर एक इंसान भी दिखाई दे रहा है जिसके ठीक सामने--

सीमेंट के बस्ते और पीछे कलर के डब्बे भी दिखाई दे रहा है।

जिस दीवार में येलो कलर से पेंट किया गया है।

जीसमें दो डेंटिस्ट दांत के सर्जरी कर रहे हैं।

अलमारी है जिसमें लेपटॉप रखा हुआ है।

सबसे पहले मुझे इस तस्वीर में मेरी और जीसस क्राइस्ट का एक स्टैचू दिखाई दे रहा है।

और पीछे एक खिड़की भी है।

और उसके सामने एक ऑटो रिक्शा भी है।

इसके पत्ते के कलर येलो ग्रीन और ब्राउन कलर की है।

और स्पीकर्स के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस में शर्मा ऑडियो लिखा गया है।

एक इंसान भी खड़ा हुआ है और उसके सामने एक पेड़ है।

बिल्डिंग के अंदर काफी सारे इंसान है बिल्डिंग का गेट --

और एक काले कलर से रंगा गया है छत को।